राइट साइड नीचे में एक रेड कलर का टूल दिख रहा है।

ये फोटो में दो जन दिख रहा है।

ये एक दुकान जैसा लग रहा है।

इन रेस्टोरेंट का वाल कलर ग्रीन है।

उपर में सुंदर सा दो लाइटनिंग दिख रहा है।

यह फोटो में एक बेकरी शॉप दिख रहा है।

ये एक पत्थर का गुफा लग रहा है।

फोटो एक कार डीलर जैसा लग रहा है।

और एक ग्रीन कलर का सिंटेक्स भी है।

ये फोटो में बहुत सारा समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग का फोटो लग रहा है।

बाहर का ये लड़का कैप पहना हुआ है।

दुकान में एक बड़ा सा मिरर है।

बैक साइड में दो क्यू_आर कोड दिख रहा है।

बैकग्राउंड में माउंटेन दिख रहा है।

आगे में बहुत सारा वाशिंग मशीन रखा हुआ है।

ये रूम में तीन जन दिख रहा है।

आगे का लड़का येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

ये फोटो में एक आदमी मग पकड़ा हुआ है।

फ्रंट में दो आदमी बैठा हुआ है।